हीर लगाए हुए हैं और रोड भी दिख रही है रोड पर बाइक लगी हुई है।

पार्क के बगल में एक रोड है रोड पर कुछ आदमी भी दिखाई दे रही है पेड़-पौधे और बिल्डिंग भी दिखाई दे --

इस फोटो में छोटे-छोटे दो बच्चे दिखाई दे रही है जो कि मोमबत्ती लेकर खड़ी है और बहुत सारे लोग--

इस फोटो में एक रोड दिखाई दे रहे हैं रोड के साइड में फल और सब्जी की दुकान भी दिख रही है।

इस फोटो में एक रूम दिखाई दे रही है रूम में एक बेड है।

और पेर पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और इंडिया का झंडा भी दिखाई दे रहा है।

और एक पेड़ दिखाई दे रही है रात का सीन है बॉलब भी जल रहे हैं।

इस फोटो में एक मस्जिद दिखाई दे रही है।

और कुछ आदमी टॉली बैग लेकर जा रहा है यहां पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक होटल दिखाई दे रही --

इसमें टेबल कुर्सी लगी हुई है और अंधेरा का सीन है गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक बैंक दिखाई दे रहा है जिसका नाम भारतीय स्टेट बैंक है।

जिसमें कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं और बाइक साइकिल लगी हुई--

इस फोटो में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के आगे--

इस फोटो में एक अस्पताल दिखाई दे रही है जिसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और पंखा भी लगी हुई है।

इस फोटो में एक रूम दिखाई दे रही है जिसमें एक बेड लगी हुई है।

इस फोटो में बहुत सारी भी दिखाई दे रही है और फील दिखाई दे रहे हैं फिर--

कुछ आदमी खेलते हुए दिख रहे हैं और पेड़-पौधे भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक हॉस्पिटल दिखाई दे रही है जिस पे लिखा हुआ है डॉक्टर को--

डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह एम_बी_बी_एस एम_डी शिशु रोग विशेषण जिसके आगे--

साइड में खेती भी दिखाई दे रही है जिसमें पेड़ पौधे भी--

है और मंडप लगी हुई है।

इस फोटो में एक फील्ड दिखाई दे रही है फील्ड में कुछ लोग--

इस फोटो में कुछ बांस की गुलगस्ते दिखाई दे रही है और टोकरी भी दिखाई दे रही है और --

इसमें झूमर लगी हुई है और--

काम करते हुए लोग दिख रहे हैं एक बस भी दिख रही है और पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं जहां पंखा लग --

इस फोटो में एक फील्ड दिखाई दे रही है फील्ड में इंडिया का--

और आईडिया का सीम का--

रही है और बगल में एक बॉक्स रखा हुआ है गुवारे से सजी हुई है।

इस फोटो में पेट्रोल पंप दिख रही है जिस पे ह_प --

इस फोटो में एक बैंक का फोटो दिख रहा है जिस पे --

बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और बैंक के आगे एक गाड़ी लगी हुई है और--

इस फोटो में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रही है जहां पे बहुत --

रोड पे दो एक ऑटो दिख रही है और बहुत सारी बिल्डिंग भी दिख रही है।

जिसके बगल में कुछ बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है और पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक मुस्लिम का मस्जिद दिख रहा है जिसके दोनों तरफ बॉल जल रहे हैं।

और कपड़ा पसारे हुए हैं बगल में एक बिल्डिंग दिख रही है।

पैर पौधे भी दिख रहे हैं।

इस फोटो में सटर गिरी हुई एक दुकान अ दिख रही है जिस पे विजय बुक कॉर्नर लिखा हुआ है और एक आदमी--

जिसका नाम मुर्रीक्क्न--

डेंटल क्लिनिक है और उसके बगल में एयरटेल लिखा हुआ है और बहुत सारी दुकान भी दिख--

सरक के बगल में बरा बरा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है गा --

और कुछ चीज का स्टैचू बना हुआ है और पेर पौधे और हरियाली भी दिख रही है।

इस फोटो में एक स्टेज दिख रही है स्टेज पर एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है स्टेज गुब्बारे से सजाई गई है --

इस फोटो में छठ पूजा करते हुए औरत दिखाई दे रहे हैं जिसमें बच्चे भी दिख रही हैं और --

लगी हुई है सुबह का समय है और पेर पौधे भी दिख रहे हैं।

कुछ फोटो भी दिख रहे हैं।